ये दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए बहोत सुंदर दिख रहा है बहोत सजाए गया है।

गाय का हॉल है यहां से यहां बहोत सारी गाय हैं उनको नन चारा दिया गया है और यह खा रहे हैं।

ये एक आश्रम है क्या ये एक आश्रम है शायद।

ये एक बेड हैं डबल बेड हैं दो पिलो हैं दो बेडशीट हैं यहां पर एक पर्स भी हैं।

यहां पर दोनों तरफ बैठे है खाना खाने के लिए और खा भी रहे हैं।

ये एक बड़ा सा हॉल है बहोत बड़ा हॉल है और इसके ऊपर बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं ये एक हॉल है।

ये बहोत बड़ा सा हॉल है बहोत साफ है बहोत सुन्दर दिख रहा है और रेड कलर का--

अ से सजाया गया है बहोत सुंदर दिख रहा है ये एक पार्लर हैं।

ये सीढी है यहां पर और घर भी है।

टाइल्स संबलपुर ए टाइल्स की दुकान है इसके आगे रोड है।

ये एक कबाड़ी का दुकान है और ये तराजू है ये टूटा टूटा सा एक गाड़ी है।

एक रूम को बहुत सुंदर से डेकोरेट किया गया है।

एक होटल हैं यहां पर डबल डबल बेड है और गद्दीई बिछाया गया है दो तकिए हैं यहां पर--

एक रास्ता है और बहोत बड़े बड़े पेड़ है बहोत सुंदर पेड़ है ग्रीन कलर का पेड़ है।

और यहां पर ब्रे ब्रेस्ट फिटिंग करने के लिए यहां पर रूम जैसा बनाया गया है।